माला के पास कुछ बड़े-बड़े कट्टो में कुछ फूल रखे हुए है व एक दुकान दिख रही है एक व्यक्ति दिख रहा है व्यक्ति के आगे दो व्यक्ति खड़े है।

इस छाया चित्र में एक बड़ी चट्टान के अंदर की गुफा दिखाई दे रही है |

पुरुष व महिलाए अलग- अलग पंक्तियों में लाल कुर्सियों पे बैठे हुए हैं |

तथा वे एक बंद कमरे में है बंद कमरे की छत गुब्बारों और कागजो से सजी हुई हैं |

मंदिर में बहुत सारी सिडडियों ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है तथा दो व्यक्ति सीडियो पर चढ़ रहे है।

ईमारत का रंग सफ़ेद हैं वे ईमारत के सामने एक चालक एक रिक्शा के साथ खड़ा हुआ --

व यह जंक्शन का बाहरी हिस्सा है जिसपर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई है।

इस छाया छत्र में सौंदर्य की दुकान जहा बाल कटवाने आते है लोग वह छाया छत्र है।

जिस पर सचिन तेंदुलकर की तस्वीर है वे कुछ पैन की फोटो हैं।

इस छाया छत्र में एक महिला दिख रही है एक महिला किसी प्रकार का भाषण दे रही है।